कार के सामने काले रंग की साइकल भी लगी हुई है।

यह एक पिकनिक स्पॉट का दृश्य है।

मूर्ती पे कुछ अनेक अनेक प्रकार के फूलों के माले तथा अन्य फूल रखे हुए हैं।

तथा कमरे की दीवार सफेद और नीचे लाल रंग की है।

पीछे की ओर एक सफेद रंग की बड़ी सी इमारत है।

दोनों दरवाजे फाइबर के कांच के शीशे से बने हुए हैं।

दुकान के बाहर अरमान पोल्ट्री लिखा हुआ है।

कुछ अन्य मोटरसाइकिलें भी लगी हुई हैं।

यहां का वातावरण काफी शांत और सुंदर है।

तथा यह एक काफी बड़ा हाल है।

इस तस्वीर में सामने एक ठेला है।

यह एक एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य है।

तथा मैदान काफी बंजर है।

यह किसी कपड़े के शोरूम के अंदर का दृश्य है।

तस्वीर में कई सारी लकड़ी की मदद से बनाई हुई टेबल तथा कुर्सियां नजर आ रही है।

सोफे के पीछे एक भूरे रंग का दरा दरवाजा भी बना हुआ है।

पीछे की ओर छोटी सी इमारत भी है सफेद रंग--

सारे डॉक्टर ने सफेद तथा अन्य रंग का मास्क लगा रखा है।

सलून के अन्य सामान रखे हुए हैं।

यह एक बगीचे का दृश्य है।

तथा घासो के बगल में कुछ अन्य पौधे भी मौजूद हैं।

सामने के टैंक पे कुछ लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं।

आसपास कई सारे झोले लटके हुए हैं।

तस्वीर में एक गैरेज का अंदर का दुकान का दृश्य है।